इस इमेज में दो ब्राउन कलर की कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर सामने दो बड़े-बड़े मिरर लगे हुए नजर आ रहे है जिनके ऊपर बहुत सारे बल्ब जलते हुए भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर इस इमेज मे एक ब्लैक कलर का बड़ा सा टायर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ बाइकें भी यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए दि--।

ये इमेज में एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसके बहार कुछ गाड़िये खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक ऑटो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आते-जाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पीछे एक बड़ा-सा पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में बहुत सारी लेडीजे पानी में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ लकड़ी की डलियाओं में समान रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक ड्राय फ्रूट की शॉप दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे ड्राय फ्रूट पन्नियों में पैक करे हुए रखे हुए दिखाई दे रहे है।

ये इमेज एक कारखाने की है जहाँ पर एक बड़ी सी मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर दो वर्कर काम करते हुए नजर आ रहें हैं।

इस इमेज में एक डॉक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने --